अ काफी बड़े-बड़े पेड़ हैं बैठने की सीटें हैं ।

एक टावर है बच्चे हैं जेंट्स हैं ।

अ दुकान पे काउंटर हैं नम प्लास्टिक के डब्बे हैं टॉफी के --

और सामान कार्गू कैलकुलेटर हैं पेन हैं नमकीन के पैकेट्स हैं वाँर्नविटा हैं।

अ एक मकान बहुत बड़ा लोहे का गेट हैं गेट पे एक ताला लग रहा हैं ।

एक शटर वाली दुकान हैं कार की एक कार हैं ।

अ एक बोर्ड लगा हुआ है कार ए_सी --

सोफा है टेबल है कांच की जेंट्स बैठा हुआ है पंखा है कूलर है एक पहिया है --

एक लेडीज और जेंट्स बैठे हुए हैं कुर्सी पे और टेबल हैं।

एक ग्राउंड में स्कूल की चार लड़कियाँ दिख रही हैं।

तेल की केन हैं साबुन हैं बच्चों का अ उम --

हाँ और पानी बहता हुआ दिख रहा हैं पानी में ही टेबल हैं कुर्सियाँ हैं।

एक दुकान हैं एक लड़के की फोटो चिपक रही हैं कपड़ों की--

और उसमें लिखा है फिजाओं में रंग भर दे।

दो लेडीज से बैठी हुई हैं एक फोन पे बात कर रही हैं और ये पीछे एक जेंट्स बच्ची को गोदी में लिया हुआ हैं ।

व्हाइट कलर के ड्रेस में है लड़का कुछ लड़कियां है।

ब्लैक कलर की जो पानी में तैर रही हैं ।

कटर हैं दो लाइट अ साइड में लगी हुई हैं चौखटों पे--

फूलों की माला पड़ी हैं गले में पंखा हैं।

लोहे का पुल बना हुआ हैं काफी सारी --

प्ले ग्रुप नर्सरी एलकेजी य_के_जी का बोर्ड लगा हुआ हैं और वन टू थ्री फोर --

लोहे के पाइप हैं ब्लू कलर का पानी हैं टेबल हैं टेबल पर एक --

और एक पुरानी साड़ी टंगी हुई हैं साइड में लाइट्स हैं ।

बिना कमरे के अंदर आना मना हैं का बोर्ड लगा हुआ हैं ।

और काफी सारे सामान रखे हैं एसी हैं ।

एक दुकान हैं शीशे का गेट हैं मोटरसाइकिल हैं कूलर हैं।

एक काफी बड़ी झील हैं झील में--

और पाउडर हैं स्प्रे हैं डलिया हैं सामने सामान रखने की --

ए कुछ स्टेज पे लड़कियाँ --

और बच्चे जेंट्स बैठे हुए है एक ने कैप लगा रखा है और अपनी ड्रेस नए समसी के--

अ फ्रिज हैं फ्रिज में प्लास्टिक की बोतल हैं ।

एक बहोत बड़ा ग्राउंड है पेड़ है तीन बकरे है --

एक काँच का काँच की खिड़की हैं खिड़की पे पर्दे टंग रहे हैं।

काफी सारी डेकोरेशन हैं जेंट्स हैं ।

और टेबल हैं गिलास हैं ।

आइज टेस्ट मशीन हैं।

एक शॉप है अं कुछ कपड़े हैं।

और प्लास्टिक के डब्बे हैं लाइट्स हैं।

दो माला लटक रहीं हैं फूलों की सर्टिफिकेट हैं पंखा है।

फोन है और काफी सारे सामान है कुर्सी है।

गेस्ट हाउस रूम्स लिखा हुआ हैं स्वेटर की दुकान हैं।

एक लड़के ने बॉक्स में लगा हैं कान में --

दो अ एक लड़का ब्लैक कलर की शर्ट में उंगलियाँ दिखा रहा हैं दो और एक सामने देख रहा हैं।

काफी सारी साइकिल हैं और कुर्सियाँ हैं।

और सर्टिफिकेट हैं एक काउंटर हैं ।

बड़ी शॉप हैं बिस्किट हैं ।

काफी सारे सामान हैं पंखे हैं लाइट हैं ट्यूबलाइट हैं।

अ एक खिड़की पे अपना राष्ट्रीय फ्लैग लगा हुआ हैं एक जेंट्स की फोटो चिपक रही हैं ।

पहाड़ हैं पहाड़ों के बीच में नदी बह रही हैं पेड़ हैं घास हैं मोटे-मोटे बादल हैं ।

शीशे के अ शोकेस में चश्मे हैं।

टीन सेट है टीन में पेंट वालों की सीढ़ी है।

स्कूटर हैं बाइक हैं येल्लो कलर की शर्ट में एक लड़का बैठा हैं।

अ गोल सी टेबल है कुर्सी हैं गमले हैं।

काफी सारी टेबल काफी सारी कुर्सियां हैं।

पानी की बोतल हैं एक लड़की हैं जेंट्स हैं दो --

अ जेंट्स हैं जेंट्स ने एक बैग टांग रखा हैं ।

बोर्ड लगा हुआ हैं स्कूटियाँ हैं हेलमेट हैं ।

अ और एक काफी बड़ा पेड़ हैं ।